बाजार में कई तरह की मछलियां बिक्री के लिए रखे हुए हैं और कुछ लोग मछलियां खरीद रहे हैं।

बाजार थोड़ा व्यस्त दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी स्टेशनरी वस्तुओ से भरे हुए हैं जैसे की बैग पेन पेंसिल नोटबुक ऐसे अन्य चीजें भी रखे हुए हैं।

दुकान पे रोशनी अच्छी आ रही है।

पीछे दीवार पर कुछ सजावटी सामान दिखाई दे रहे हैं।

मछलियां अलग अलग आकार प्रकार की है कुछ छोटी और कुछ चांदी रंग की है जबकि अन्य बड़ी और लंबी है।

ये तस्वीर चर्च के ऊपरी हिस्से को दिखाती है जिसकी छत लाल रंग की है और उसपर एक कर्स बना हुआ है।

ये तस्वीर एक तालाब की है।

ये तस्वीर आसाम के समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी की कार्यालय की है।

इमारत के बाहर एक बड़ा नील कलर के साइन बोर्ड में मारुति सुजुकी लिखा दिखाई दे रही है।

त स्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक सुनहरा गुण बंद है इमारत के सामने के हिस्से पर तीन प्रवेश द्वार है।

सफेद कलर की प्लास्टिक की बॉक्स भी रखी हुई है आसपास का इलाका थोड़ा गंदा दिख रहा है।

काउंटर के ऊपर कैश पेमेंट कैश रिसीव्ड जैसा साइन बोर्ड लगा हुआ है।

काउंटर के ऊपर रंगीन गुब्बारे लगे हुए हैं।

दुकान का कलर लाल है दुकान के पीछे बड़े बड़े इमारतें भी है।

सफेद दिखाई दे रहा है।

फर्श पर बनी हुई एक रंगोली के चारों ओर खरे खड़े हैं।

और कुछ स्कूटर पार्क किए हुए हैं चित्र में बहोत बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक जिम का दृश्य है जिसमें बेंच प्रेस करने के लिए उपकरण रखे हुए हैं।

एक लड़का लाल और सफेद पगड़ी पहना हुआ है और एक महिला हरी साड़ी पहनी हुई है एक आदमी नीली शेरवानी पहनी हुए है।

इस तस्वीर में एक कार वर्कशॉप दिखाई दे रहे हैं।

इसमें होटल की इमारत सीरिया हरियाली और कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है।

गोल चक्कर के आसपास सड़क है और कुछ वाहन जैसे कि ट्रक और मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं।

किनारे पर दुकाने भी दिखाई दे रही है मौसम साफ लग रहा है।

दाई ओर खाली शॉपिंग बास्केट रखे हुए हैं।

ये एक समूहों को दिखाती है जो एक पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहे हैं।

ये तस्वीर एक जिम के अंदर की है इसमें विभिन्न प्रकार के बयाम उपकरण दिख रहे हैं।

दुकान में लकड़ीयों की अलमारी में बहोत सारे किताबें रखी हुई है।

प्रवेश द्वार को पीले और नारंगी रंगों से फूलों से सजाया हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी कार्यक्रम का तस्वीर है।

दुकान में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदा पदार्थों के जार और बोतले अलमारीयों पर सजे हुए हैं।